इस चित्र मे हम देख सखते है की उपर की तरफ आसमान है जिसका रंग आसमानी है और हम निचे देखे तो इसका रंग पानी है पानी भी पानी मे काही लोग तीर रहे है।

इस चित्र मे हम देख सकते है की ऊपर कि तरफ आसमान और बीच मे हम बड़ी बिल्डिंग देख सकते है जहा पे टू अँड थरी बीएचके फ्लॅट भी अवेलेबल करके --.

ऍडव्हरटाईज किया गया है और हम यहाँ पे बिल्डिंग्स को देख सकते है।

इस चित्र मे हमको दिखाई दे रहा है की यहा पर नीचे की और स्विमिंग पूल है यहा पर शार्क भी बताया जा रहा है डॉलफिन्स को रखा गया है।

लाल रंग मे लिखा गया है और हम यहाँ पर और भी देख सकते यहा पर त्रिशुल और सांप भी लटकाया गया है और हम यहाँ पर एक आदमी को भी देख सकते है।

और रंग मारा गया है जैसा की लाल रंग सफ़ेद रंग और उसको लाइटिंग्स भी दिये गए है वो शाम के वक्त चमकता--

इस चित्र मे हम देख सकते है। के यहा पे पानी को अलग अलग तरह का बनाया गया है।

इस चित्र मे हम देख सकते है की यहाँ पर नर्सेस खड़े हुए है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देखे देखे जा रहे है और वो साड़ी पहने हुए सफ़ेद कलर की दिखाई दे रहे है।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

इस चित्र में हमे देख सकते है की मार्केट बाजार जैसा की यहाँ पे आशीर्वाद का भी ऍडवरटाइज ऊपर की तरफ दिया गया है।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

इस चित्र में हम देख सकते हैं की ऊपर की तरफ आसमान को और हम यहां अलग तरह के पेड़ों को उगाया हुआ देख सकते हैं।

आप इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक लड़का हैट पहने हुए जरकिन पहने हुए शूज पहने हुए नजर आ रहा है उसके ऊपर हम देखे तो वो ठीक से बनाया गया एक अ कारखाना नजर आ रहा है।

इस चित्र मे हम देख सकते है की यहा पर कही फंक्शन हो रहा है कई लोग स्टेज पे खड़े हो गए है।